यह एक फल की दुकान है। जहाँ पर आम पपीता --

इसके आस-पास में बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी वजह से जो इसकी सुंदरता में चार चाँद लगा दे रहें है।

हनुमान जी लोगों के सबसे प्रिय भगवान माने जाते हैं|

पुनः यह एक फल की दुकान है यहां पर सभी प्रकार के फल उपलब्ध हैं। जो य यहां यहां पर लोग आसानी से सभी प्रकार के फल को उचित दामों में खरीद सकते हैं। यहां पर थोक के फल भी उपलब्ध हैं।